बहुत अच्छा सुन्दर मंदिर है मुझे हनुमान जी का चित्र बहुत बढियाँ पंसंद आया बहुत खुबसुरत है यह देखने में अच्छा लग रहा है हनुमान जी का आँख भी बंधा हुआ है और फिर भी अच्छा लग रहा है सजावट भी बहुत अच्छा किया हुआ है।

अलग-बगल पेड़-पौधा भी लग रहा है और बहुत सारी जगह है बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत सुन्दर सजावट किया है।